और इसमें शीशे लगाए हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है इस दुकान में रेक बना हुआ है।

गुबारे हे कुछ लाल रंग के हे कुछ हरा रंग के हे.

मंदिर जो हैं वो पक्के का बना हुआ हैं उसके अगल बगल हरा भरा पेड़ है।

चक्र का निशान भी पीछे बना हुआ है मूर्ति के पीछे --

कुछ लाइन में खड़ी है कुछ बगल में खड़ी है कुछ फील्ड में खड़ा है कुछ लोग छतरी--

एक किराना दुकान है किराने दुकान में एक टेबल है.

फिर आपका कुरकुरे लेज आदि का सामान टांगा हुआ है।

मकान है मकान के पीछे एक बड़ा सा मकान बना हुआ है उसके बीच में एक शेड बना हुआ है।

फील्ड में आदमी है फील्ड के अगल-बगल हरा-भड़ा पेड़ है.

टेबल में बहुत से टुल पंप रखे हुए हैं.

बगल में बहुत सा इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है.

एक ऑटोमोबाइल दुकान है जिसमें गाड़ी का रिपेयरिंग किया जा रहा है।

और उस फिल्ड को परदे से घेरावां किया गया है.

साथ अ भूरा रंग से भी पेंट किया हुआ है उसमे ग्रिल लगा हुआ है ग्रिल में--

जिसमें आयुष्मान भारत योजना का एक पोस्टर लगा हुआ है।

लेटर बॉक्स है लाल कलर का लेटर बॉक्स बना हुआ है लेटर बॉक्स में टाइमिंग हॉर्स लिखा हुआ है।

लेटर बॉक्स ताले के बगल में एक घेरा सफ़ेद रंग से बना कर पीला लाइन से लाइनिंग किया हुआ है.

एक बहुत बड़ी नदी है और नदी में बाढ़ आया हुआ है इस बाढ़ इतना तेज बाढ़ आया हुआ कि पूरा पुल के ऊपर से पानी पार हो रहा है.

रेफरी उजला टोपी पहना हुआ है.